चित्र में एक मस्जिद है जिसके दरवाज़े हरे रंग की है मोह्हमद लिखा हुआ है इसके एक तरफ मुहम्मद रसूलल्लाह या अल्लाह मुहम्मद लिखा हुआ है एक साइड एक पेड़ भी है हरा झंडा भी है।

और माइक वगेरा भी दिख रही है नीला आसमान भी दिख रहा है एक चौकी भी है।